देखिए यहां पर टेबल है कुर्सी है।

देखिए यहां पर बड़ा सा टेबल रखा है और चार पांच चेयर रखी है चेयर के पीछे एक मूर्ति रखी हुई है।

इस मंदिर के सामने तीन-चार आदमी हाथ जोड़े हुए बैठे हैं।

सुबह हुआ है और बहोत सारे थैले और बहोत सारी चीजें इधर उधर रखी हुई है।

देखिए ये यहां पर लंबा सा बना हुआ है दीवार आधी आधी खींची है।

मूर्ति रखी हुई है फैन है गुब्बारे है लाइट वगैरा लगे है।

देखिए यहां पर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है लाइटिंग से सजा हुआ है हरा ब्लू दिख रहा है।

देखिए इस बड़े से कमरे में--

देखिए यहां पर एक दुकान है बाहर पार्टी परवेनसु लिखा हुआ है।

टेबल और चेयर रखी हुई है सोफे भी रखे हुए हैं टेबल पर--

काम कर रहे है बहोत सारे आदमी कामों में मशहूल है।

देखिए यह दो डॉक्टर है टेबल पर कुत्ता है।